अ इस गुफा के बाहार कुछ लोग है जो गुफा के अन्दर जाते हुए दिख रहे है और गुफा के बाहार कुछ पत्थर भी पड़े हुए भी दिख रहे है।

इस तस्वीर में मुझे एक लड़का दिखाई दे रहा है और यह लड़का बोट के उपर खड़ा है जहाँ पर खूब सारा पानी है और पीछे इस लड़के के पीछे जंगल एरिया है जहाँ पर पेड़ पौधे दिख रहे है।

यहा तस्वीर एक चोराहे की दिख रही है जो फॉर लाइन होती है वहा पर --